गाड़ी वाडी रखल बा धोवत ता रंजा एक को नीला पेंट धोवत तारे गड़िया पर्दा लगल बा ग्री कलर के चार ठे |